काम कर रही है और यहाँ घर भी दिख रहा है और यहाँ ईटा की चड़ाई करी जा रही है।

सुधारने को रखी हुई है चक्का भी निकला है कार का और गाड़ी सुधर रही है।

जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहै हैं यह जिला पंचायत अधिकारी--

जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहै हैं यह एक ऐसी जगह दिख रही है जहाँ कार --

जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहै हैं यह रॉयल पैलेस है यहाँ शादी हो रही है।

और यहाँ बाजू में पटेल टेलर्स --

पटरिया भी दिख रही है ऊपर जाने की सीढ़ियां भी है।

--हुए हैं वह फल बेच रहा है और रोड भी गया हुआ है सामने--

जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहै है यहाँ मॉडल कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी है।

यहाँ एनुअल फंक्शन हो रहे है और लड़कियां डांस कर रही है और भी लोग है यहाँ पर जो डांस को देख रहे हैं।

जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं यह जावा चंद्र ऑटो व्हील्स है यहाँ बहोत --

जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं यहां रोड दिख रहा है रोड पर छह लड़के लोग--

जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहै हैं यह एक कपड़ों का माल दिख रहा है।

यहँ एक रोड दिख रहा है। रोड में बस स्टैंड बना हुआ है और यहाँ ऑटो --

कपड़े मिल रहे है स्टैचू भी कुर्ते कटऑफ का पहनी हुई हैऔर यहाँ पर बहोत सारा सामान कपड़ा मिल रहे हैं।